यहां पर एक क्लास रूम नजर आ रहा है जहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं।

स्विमिंग पूल बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल के अंदर काफी सारा पानी नजर आ रहा है।

और उसके अंदर काफी सारी कुर्सियां अलग अलग तरह की कुर्सियां--

यह कोई दासनिक स्थल है जहां पर काफी सारे श्रद्धालु नजर आ रहे है।

एक कपल का फोटो नजर आ रहा है और दो निठल्ले व्यक्ति घुमते दिखाइ दे रहे हैं।

यहां पर एक नर्सरी फार्म दिखाई दे रहा है जहां पर सामने एक कुर्सी।

यहां पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है यह काफी अच्छा पेट्रोल पंप है।

पेट्रोल भरवाते नजर आ रहे हैं सामने एक व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं।

जो की फुटबॉल खेल रहे हैं।

जहां पर काफी सारी बिल्डिंगे की दिख रही है सामने कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

एच_डी_एफ_सी बैंक है सामने कुछ लोग लाइन में लगे हुए --

यह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम --

आ रहे हैं और यहां पर काफी सारे स्टील के गिलास नजर आ रहे हैं।

यहां पर कुछ बिल्डिंगे नजर आ रही है जिस पर अलग अलग तरह का रंग --